और यहाँ पर हिरण दिखाई दे रहै हैजमीन पर बहोत ज्यादा करकर कूड़ा कर्कट डला हुआ है गिट्टी वगैरा डली हुई है।

हमे यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें स्विमिंग पूल मे बहुत सारे बच्चें है और वो बच्चें नहा रहे है और...

जिनकी डिजाइने अच्छी बनी हुई है वृक्ष प्रदूषण भ्रष्ट लिखा हुआ है और एक बाउंड्री सी बनी हुई है जिस पे तार जाली लगी हुई है पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है रोड भी बना हुआ हैं।

यहाँ पर बहोत ज्यादा पुस्तके रखी हुई है यह व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने वाले है जो कि अन्य प्रकार की पुस्तक खरीदने आए है और बल्ब भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक हमे व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास माइक भी है और वो कुछ हँ कागज मे देख कर बोल रहा है वहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है

यहाँ पर गार्डन सा बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ उम्-म बनता हुआ नजर आ रहा हैएक